पार्क है पार्क में पानी जो है उसमें चारों तरफ से घड़ियाल बैठे हैं।

और इसमें पानी पेड़-पौधे पेड़-पौधे के कितने खूबसूरत से लगाया गया है यहां से लोग आते-जाते हैं घूमने के लिए--

इसमें चेयर्स है सभी एक तरह एक ही है और छोटी-छोटी केबिन है। सामने में भगवान का फोटो लग रहा --

ये जिम है जहाँ पे लोग के लिए जाते हैं यहाँ पे बहुत तरह की मशीने है।

ये बिहार मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर है।